अगल-बगल जैसे हाता का घिराया आया है उसमें चित्र वगैरह बना हुआ है तार से घेराया हुआ है एक रोड है इसमें एक बाइक जा रहा है स्कूटी जा रहा है।

मेरे आंखों के सामने बहुत ही सुंदर यह पेट्रोल टंकी नजर आ रहा है यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है एक इंसान बाइक में जाते हो नजर--

मेरे आंखों के सामने ये ये स्कूल नज़र आ रहा हैं उस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर--